साइड में एक टैंकर दिख रहा है बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

साइड में बहुत सारा पेड़ दिख रहा है और बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है और बिल्डिंग के ऊप साइड में एक पोस्टर लगाया हुआ है।

यहां पे गणेश भगवान का बड़ा सा मूर्ति है।

आगे में एक बड़ा मंदिर जैसा दिख रहा है टेम्पल जैसा।

यहां पे गुब्बारा दिख रहा है बहुत जगह।

पेड़ में भी लाइट दिया गया है।

राइट साइड में राउंडिंग कर दिया गया है और साइड में एक पोल है जो इधर से इधर तार गया है।

यहां पर टेंपो में हरा कलर का झंडा लगाया हुआ हे।

उसके साइड में हाथ का ग्लव्स है और साइड में कांच का गेट है।

साइड में एक पोस्टर है पोस्टर में भी कार छपा हुआ है साइड साइड में बहोत सारा लाइट भी है।

इंडिया का फ्लैग भी लगाया गया है।

दुकान के साइड में एक आदमी आ रहा है और साइड में पौधा भी लगाया हुआ है।

उधर साइड में बहुत सारा पेड़ लगाया हुआ है अलग का--

नदी के साइड साइड में बहुत सारा छोटा छोटा पक्खल है।

रोड के साइड में लाइट जल रहा है।